enroll students and communicate in moodle पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे कि: csv file द्वारा uploaded किए गए छात्रों को course में नामांकित कैसे करें
courses में groups कैसे बनाएं और छात्रों को messages और notes कैसे भेजें
इस tutorial का उपयोग करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ: ubuntu linux os 1604
xampp 5630 से प्राप्त apache mariadb और php
moodle 33 और firefox web browser
हालांकि internet explorer का उपयोग न करें क्योंकि इसके कारण कुछ प्रदर्शन विसंगतियां आती हैं
इस tutorial के अनुसार आपके site administrator द्वारा आपको teacher के रूप में पंजीकृत किया गया है और कम से कम आपको एक course असाइन किया गया है
यह भी माना गया है कि आपने अपने course के लिए कुछ course सामाग्री नियतकार्य और quizzes शामिल किए हैं
यदि नहीं तो कृपया इस website पर संबंधित moodle tutorials का अनुकरण करें
शुरू करने से पहले कृपया अपने moodle site administrator को आपकी moodle site में 5 या 6 यूजर्स को जोड़ने के लिए कहें
आप इन नए यूजर्स को बाद में अपने course में शामिल करेंगे इसलिए सुनिश्चित करें कि आपकी moodle site में नए यूजर्स जोड़े गए हैं
moodle में शिक्षक system पर नए यूजर्स नहीं जोड़ सकते हैं
browser पर जाएं और teacher के रूप में अपनी moodle site पर login करें
बाएं navigation menu में calculus course पर click करें
ऊपरी दाईं ओर पर gear icon पर click करें और फिर more पर click करें
हम course administration पेज पर हैं
users टैब पर click करें
users section में enrolled users link पर click करें
यहाँ इस course के लिए 2 यूजर्स नामांकित हैंrebecca raymond और priya sinha
rebecca raymond के पास teacher role है और priya sinha के पास student role है
निचली दायीं ओर पर enrol users पर click करें
इस सूची में वह छात्र हैं जिन्हें मैं अपने calculus course में नामांकित करना चाहती हूँ
assign roles dropdown में student चुनें
फिर आप जिस यूजर को नामांकित करना चाहते हैं उसके सामने enrol button पर click करें
मैं अभी अपने course में कुछ छात्र नामांकित करूँगी
कार्य होने पर निचली दायीँ ओर पर finish enrolling users button पर click करें
हम पेज के शीर्ष पर calculus course के लिए नामांकित यूजर्स की संख्या देख सकते हैं
अब सीखते हैं कि course में कुछ groups कैसे बनाएं
ये ग्रुप्स group activities के लिए छात्रों को असाइन करने में हमारी मदद करेंगे
मैं 2 ग्रुप्स बनाउंगीexplorers और creators
course page पर वापस जाने के लिए breadcrumb में calculus पर click करें
और फिर से course administrator पेज पर जाएं
users टैब में groups link पर जाएं
नीचे scroll करें और create group button पर click करें
group name के रूप में explorers type करें
यहाँ कोई अन्य अनुवार्य fields नहीं है
नीचे scroll करें और save changes button पर click करें
ध्यान दें कि explorers अब groups की सूची में बायीं ओर पर देखा जा सकता है
उसके आगे शून्य संख्या दर्शाती है कि अभी तक उस group में कोई भी यूजर नहीं है explorers चुनें यदि पहले से चयनित न हो
फिर नीचे दायीं ओर पर add/remove users button पर click करें
मैं छात्रों की सूची में से susmitha और sai चुनूंगी
फिर दो columns के मध्य में add button पर click करें
बायीँ ओर पर group explorers में यूजर्स की सूची देखें
दायीं ओर पर course में नामांकित सभी छात्रों की सूची देखें
वे भी इस group में जोडे जा सकते हैं जब शिक्षक को आवश्यकता हो
2 सूचियों के मध्य में add और remove buttons सक्षम हो जाते हैं जब हम सूचियों से यूजर्स का चयन करते हैं
पेज की निचली ओर पर back to groups button पर click करें
इस tutorial को रोकें और यह छोटा नियतकार्य करें creators नामक नया group जोडें
group को 2 नए यूजर्स असाइन करें यह होने पर ट्यूटोरियल को शुरू करें
अब आप इस तरह की screen देखने के लिए सक्षम होने चाहिए
ध्यान दें columns roles groups और enrolment methods में icons है
इनके कार्य को समझने के लिए प्रत्येक icons पर mouse ले जाएं
ध्यान दें कि: नामांकित छात्र एक group से अधिक से भी संबंधित हो सकता है
अब देखते हैं कि हम छात्र को message कैसे भेज सकते हैं
बाएं navigation bar में participants link पर click करें
यह course में असाइन की गई उनकी भूमिका के साथ सभी नामांकित यूजर्स की सूची दिखाएगा
default रूप से moodle participants पेज केवल 20 छात्रों की सूची दिखाता है
सभी छात्रों को देखने के लिए आपको show all पर click करने की आवश्यकता है यदि आपके पास 20 छात्र से अधिक हैं लिंक अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि मेरे पास 20 से अधिक छात्र नहीं हैं
यहां यूजर्स के ऊपर कुछ filters देखे गए हैं उनका उपयोग यूजर्स के सही set को चुनने के लिए करें
मैं current role dropdown में student चुनूँगी
यह सूची को केवल उन यूजर्स को दिखाने के लिए filter करेगा जिनको छात्र की भूमिका असाइन की गई है
सभी छात्रों को चुनने के लिए पेज के निचले भाग पर select all button पर click करें
फिर with selected users ड्रॉप डाउन में send a message चुनें
यह सभी चयनित छात्रों को एक common message भेजेगा
tutorial रोकें और यहाँ दिखाए गए अनुसार message body में message type करें
फिर नीचे message भेजने से पहले प्रिव्यू के लिए preview button पर click करें
आप update button पर क्लिक करके message अपडेट भी कर सकते हैं यदि आवश्यक हो
message भेजने के लिए send message button पर click करें
आपको पुष्टिकरण संदेश और participants lists पर वापस जाने के लिए एक link दिखाई देगा
back to participants list पर click करें
with selected users dropdown पर click करें प्राइवेट और common दोनों notes को भेजने के लिए options पर ध्यान दें
कोई 2 users चुनें
with selected users dropdown से add a new note चुनें
एक यूजर के content text क्षेत्र में मैं यहाँ दिखाए गए अनुसार note type करूँगी
दूसरे यूजर के आगे content text क्षेत्र में मैं यहाँ दिखाए गए अनुसार note type करूँगी
दायीं ओर context dropdown पर देखें
note का context निर्धारित करता है कि कौन यूजर्स note देख सकता है
personal note केवल शिक्षक द्वारा देखा जा सकता है और छात्र को भेजा जायेगा
course note इस course के अन्य शिक्षक को दिखाई देगा
site note सभी courses में सभी शिक्षकों को दिखाई देगा
अधिकांश संस्थानों में शिक्षकों और छात्रों के बीच संचार के संबंध में अपने नियम होते हैं
आप इन दिशानिर्देशों के आधार पर context का चयन कर सकते हैं
मैं context को course रहने दूँगी
यह होने पर save changes पर click करें
इसी के साथ हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं संक्षेप में
इस tutorial में हमने सीखा कि : course में यूजर्स को नामांकित कैसे करें
course में ग्रुप्स कैसे बनाएं और छात्रों को notes और messages कैसे भेजें
यहाँ आपके लिए एक नियतकार्य है
मौजूदा ग्रुप्स में नए छात्र जोडें और उन्हें welcome message भेजें
विवरण के लिए इस tutorial के assignment link का अनुकरण करें
निम्नलिखित link पर मौजूद video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें
spoken tutorial project team कार्यशालाएँ आयोजित करती है और प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
कृपया समय के साथ अपने प्रश्नों को इस forum में post करें
spoken tutorial project nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है इस mission पर अधिक जानकारी दिखाई गई link पर उपलब्ध है
यह script विकास द्वारा अनुवादित है मैं जया अब आपसे विदा लेती हूँ